मशीन को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है।

इस यहां ब्लू और रेड कलर की लाइट भी दिख रही है।

उसके ऊपर मोबाइल रखा हुआ है जो चार्ज हो रहा है।

और कुछ टेबल के ऊपर कैलेंडर भी रखा हुआ है।

टेबल ब्राउन कलर की है और कुर्सी ब्लैक कलर की है।

हम देख सकते है कि इस चित्र में बास्केटबॉल कुछ ब लड़के खेल रहे है और--

ऊपर साफ आसमान बहुत प्यारा लग रहा हैं बगीचा सुंदर लग रहा हैं।

कई आदमी दिख रहे है जिन्होंने मॉल कपड़े पहने हुए है।

और एक सूखा पेड़ पड़ा है और सामने कई घर दिख रहे हैं और दो पर्वत--

इस चित्र में ए एक एक जिम दिखाया गया है।

एक लड़का दूर येलो कलर की ड्रेस में है।

और दूर एक बैनर पर के वन सेवन एरेना लिखा हुआ है।